सामने गेट दिखाई दे रहा हैं दो आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं बीचों बीच मे एक पट्टी दिखाई दे रही हैं ग्रीन कलर की मैट बिछी दिखाई दे रही हैं।

मुझे एक नदी दिखाई दे रही है नदी के दूर एक पहाड़ दिखाई दे रहा है पहाड़ बहुत हरा भरा दिखाई दे--

ये एक नदी दिखाई दे रही है नदी में अ पानी दिखाई दे रहा है उसके कुछ कॉर्नर पर रेत दिखाई दे रही हैं।

मुझे एक मेला दिखाई दे रहा है मेले में एक कूदने वाला दिखाई दे रहा है जिसके सब ऊपर बच्चे कूदते हुए दिखाई दे रहे है साइड मैं झूला दिखाई दे रहा है।